ये एक पुराने किले की तस्वीर दिखाई पड़ती है यह पूरी तरह से टूट चुका है किला --

और नीचे यहाँ बुलेट रखी हुई है। इस साइड एक कार रखी हुई है और एक मोटरसाइकिल भी रखी हुई है ।

जिनसे पानी से मछलियों को धोया जाता है और यह यह दुकान में मछलिया बेची जाती हैं और बहुत सारे सामान दिखाई देते हैं।

यह एक सरकारी स्कूल है। यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चो को पढ़ाया जाता है और यहाँ पर प्रचार के लिए एस.डी. शास्त्री आई.टी.आई. कॉलेज का भी प्रचार किया गया है।

यह एक मकान हैं यहाँ दो मोटरसाइकिल रखी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर एक हैंडपंप लगा हुआ हैं जिससे यहाँ के लोग इससे पानी भरते हैं।

यह एक पुराने जमाने का बना हुआ किला लग रहा है जिसमें बहुत सारी कारीगरी पुराने कारीगरों द्वारा की गई है और इसमें दो मोर बने हुए हैं। जो पत्थर पर बने हुए हैं।

जो पुराने मजदूरों द्वारा निर्मित किये गये हैं। ये देखने में बहोत आकर्षक बहोत तरह की कलाकारी की जाती हैं। ये दरवाजे देखने में बहोत सुंदर और अच्छे लगते हैं।